बगल में एक शीशा दिख रहा है।

दोनों स्वेटर पहने हुए हैं जूता पहने हुए हैं जींस पहने हुए हैं और एक टोपी पहने हुए हैं।

यह एक रेस्टोरेंट का चित्र है जहां बहुत सारे टेबल पड़े हुए हैं।

यह एक जिम सेंटर है यहां बहुत सारे जिम के सामान रखें हुए हैं।

इसके बगल में बहुत सारे पेड़ पौधे लगे हुए है जो भी हरे भरे हैं।

बिजली का तार जाते दिख रहा है।

बगल में बहुत सारे हरे भड़े पेड़ पौधे दिख रहे हैं।

बैलून लगाया गया है।

एक लेडिस बैठी है जो वाइट कलर का जैकेट पहनी हुई है उसके बगल मे एक लेडिस खड़ी है।

बगल में दो जेंट्स है जहां एक टेबल पर बहोत सारे दवाई रखे हुए हैं।

इस चित्र में बहुत बड़े तालाब दिख रहे हैं।

बगल में एक जेंट्स है।

चप्पल रखा हुआ है यह एक हॉल में रखा हुआ है।

इसके ऊपर शीशा लगाया गया है।

सामने एक टाटा मोटर्स का चित्र दिख रहा है जो एक बोर्ड पर लिखा है।

वाल में एक गेट दिख रहा है जो भूरा कलर का है।

यहां सामने एक सड़क दिख रहा हैजिसपर बहुत सारे लोग चलते दिख रहे हैं।

यहां एक व्हाइट कलर का बल्ब जला दिख रहा है।

नीचे बहोत सारे बाइक्स रखे हुए हैं।

बहोत सारे बल्ब रखे हुए है।

बगल में एक फोटो लगा हुआ है जिस पर माला चढ़ाया गया है।